एक व्यक्ति कार के ऊपर पन्नी से पोलिश कर रहा है चारों तरफ कलर पेंट है वॉल पर सामने की तरफ तीन विंडो बनी हुई है।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइड है| यहाँ पर छत का काम किया जा रहा है| यहाँ पर लोहा बांध रहे है बहुत सारे मजदूर।

एक एक लड़का ऊपर की तरफ मसाल जला रहा है पीछे फ्लेक्स लगे हुए है जो ऑरेंज कलर का धुआँ निकल रहा है।

डांस स्टेज है यहाँ पर कुछ महिलाऐं तीन महिलाऐं डान्स कर रहीं हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है।

ग्राउंड है। यहाँ पर ग्रीन कलर की ग्रासेस भीं लगी हुई है। कुछ पत्थरो की डिज़ाइन भी बनी हुई है। यहाँ पर रेलिंग भी बनी हुई है।

एक सड़क है सामने की तरफ एक सड़क नज़र आ रही हे जिसमे एक रिक्शा वाला सामने की तरफ से आ रहा है पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई हैं।

मार्केट है। सामने की तरफ में दो बड़ी-बड़ी दुकाने नज़र आ रही है। यहा पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे अजंता डायरी लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के अंदर की पार्किंग बनी हुई हैं नीचे के तरफ इसमे टाइल्से लगी हुई हैं ऊपर की तरफ इसमे पिलर्स हैं बीम है कॉलम है।

यहाँ पर ग्रीन कलर की गार्डनिंग की गई है यहाँ पर बहुत सारे पड़े पौधे लगे हुए है चारों तरफ इसमें बाउंड्री वॉल की तरह पेड़-पौधे लगे हुए है इसमें दो डस्ट्बिन भी रखे हैं।